यहाँ पर है जो भगवान की मूर्तियां रखी गई हुई हैं तीन मूर्तियां रखी गई हुई हैं और वो जिस-जिस पर रखी गई हुई हैं वह जो है वह सफेद रंग का है और ऊपर से वह ब्राउन रंग का है।

यहाँ पर एक चाय की सी दुकान है और यहाँ पर कई लोग बाहर खड़े हुए हैं यहाँ चाय भी बेचीं जा रही है और यहाँ जो हैं चिप्स वगैरह बिस्कुट वगैरह वहाँ पर और एक ये दुकान है और शाम का समय लगता है उस तरफ ऊपर से उजाला आ रहा है।

यहाँ पर ये जो मंदिर है वह काफी बड़ा है लम्बा है और यह जो मंदिर है वह सफ़ेद पीले और ब्राउन रंग का है कई सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं।

एक बिल्डिंग सी है बाहर से ये जो है वह अ नारंगी रंग का है लाल रंग का है और अंदर से अन्दर जाने का जो गेट है वह काले और लाल रंग का है।